दो टॉवल रखी हुई है तीन बोतल रखी हुई है जो कि अलग अलग है।

एक बस खड़ी है ब्लू और वाइट कलर की बस --

चार छह कुर्सियां है जिसमें कवर लगी हुई है।

दो चार बेंच भी है जिसके ऊपर कैंची वगैरा कॉपी गोंद ग्लू सब रखा हुआ है और पास में एक गमला है।

घर के पीछे काफी बड़ा पेड़ है।

आजू बाजू हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घास और जंगल है।